दुकान में गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

पुरुष ने टी शर्ट और पैन्ट पहना हुआ हैं।

मुझे यहां पर दुकान दिखाई दे रही है।

स्टेज पर लाइट दिख रही है।

मुझे यहां पर गाड़ियां दिखाई दे रही है।

सामने की ओर कई सारे पुरुष दिख रहे हैं।

यहाँ पर पुरुष दिखाई दे रहें हैं।

मुझे यहां पर पुरुष दिखाई दे रहा है।

पुरुष के हाथ में मोबाइल दिख रहा हैं।

यहां पर हरियाली दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर ए_सी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर टेबल दिखाई दे रही है।

यहाँ पर वाहन भी दिख रहे हैं।

यहां पर कार दिखाई दे रही हैं।

सामने इमारत दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर आई_डी_एफ_सी फर्स्ट बैंक का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर एक लोगों बना हुआ दिख रहा है।

सामने स्वीट्स लिखा हुआ दिख रहा है।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

यहाँ पर पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर वाहन दिखाई दे रहे हैं।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

आसपास में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कई सारे गुब्बारे दिख रहे हैं।

सामने कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कैमरा लगा दिख रहा है।

मुझे यहां पर पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

वह कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर टेबल रखी दिख रही है।

सामने इटियल थ्री जी लिखा हुआ दिख रहा है।

दुकान में सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर कुर्सियां दिखाई दे रही है।

सामने एक बच्चा दिख रहा है।

सामने अंग्रेजी शराब दुकान लिखा हुआ दिख रहा है।

सामने की ओर महिला भी दिखाई दे रही है।

सामने एक बैनर लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर पुरुष भी दिखाई दे रहे है।